और कुछ पैदल जाते हुए नज़र आ रहे हैं यहां पे एक लड़की ने एक बच्ची का हाथ पकड़ रखा है।